और पास में एक पेड़ भी दिख रहा है जो हरे हरे रंग का है।

यह एक छोटा सा गाड़ी है जिसमें पानी के डब्बे रखे हुए हैं।